सामने एक रोड हैं रोड के ऊपर तीन गाड़ियां लगी हुईं हैं और घर भी बने हुएं हैं।

और एक घर भी बना हुआ है आसमान में बादल भी नजर आ रहे हैं।

दो ब्लैक कलर की चेयर्स भी पड़ी हुई हैं।

दुकान के अंदर बहुत सारे फेविकोल के पैकेट लगे हुए है।

यहां पे बैठने के लिए एक सीट भी बनी हुई है और आसमान पर काफी ज्यादा बदल वगैरा भी नजर आ रहे हैं।

पौधे वगैरा भी लगे हुए हैं।

और बहुत सारी लाइट भी लगी हुई हैं।

और यहां पे चार चेयर्स लगी हुई है।

जिसपे कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं।

और लाइट भी लगी हुई है।

जैसे की जेल वगैरह रखी हुई है।